और काफी ढेर सारे व्यक्ति इनके कस्टमर बनकर यहाँ देखने आए हैं। ये सब व्यक्ति मछलियाँ खरीदना चाहते हैं और यह सभी व्यक्ति मछलियाँ बेचना चाहते हैं यहाँ पर --

उनमें से काफी बच्चों ने एक तरह की पोशाक पहन रखी है जिसमें रेड कुर्ता और जीन्स पहन रखा है। एक बच्चे ने अन्य प्रकार --